ये एक फोटो सा लग रहा हैं जिस पे ए_सी फॅन सब कुछ रखा हुआ हैं और उसके सामने एक फोटो भीं लगी हुई हैं जिसके ऊपर खाने की हर एक चीज की पिक्स दी गई हैं और--

और वेटर्स भी काफी दूर तक खड़े हैं झूमर बहोत ज्यादा एक लॉन्ग में भी लगा हुआ--

पड़े हुए है टेबल लगे हुए बड़े बड़े और लाइट्स वगैराह लगी हुई है।

ये एक खेत है यहां पे हरी हरी घास भी है और हरियाली काफी छाई हुई है।

मेरे सामने दो अ हेलमेट वाले आदमी खड़े हुए हैं उन्होंने कैमरे में एक जो बना रे है अ --

यह गिफ्ट काफी हैं जैसे किसी को गिफ्ट परचेस करना हो वहाँ पे काफी समान पड़ा हुआ है और वहाँ पे कंच का टेबल भी बना हुआ है बाल्टी पड़ी हुई हैं बॉक्स --

कच्ची मिट्टी है उसके अंदर पेड़ बने हुए हैं और काफी खुला मैदान सा एक बना हुआ--